प्लेन है जिसका रंग सफेद और पीछे कत्था है और वही के नीचे कुछ लोग भी खड़े हैं और वहीं से थोड़ी दूर एक ट्रक है ।

एयरपोट है। एयरपोट में एक प्लेन एक ट्रक खड़ा है। व्हाइट कलर का प्लेन --

और एक रेड- रेड स्टॉपेज निकाल कर रखा हुआ है। वहाँ --

दो पेड भी है एक सामने टावर भी है और चारो साइड हरा भरा--

बीच में फुब्बारा है। फुब्बारे पे लाइट --

सामने एक ग्राउन्ड है ग्राउन्ड में हरे कलर का घाँस लगा हुआ है पर वही पे कुछ लोग बैठे हुए है। सामने एक बिल्डिंग है।

एक टेबल है जिसका रंग लाल कलर का है। एक कुर्सी है उसके ऊपर एक टॉवेल है।